इस चित्र में बहुत सारी मछलियां कपड़े पे पड़ी दिखाई दे रहे छोटे-छोटे मछली के बच्चे काले सफेद रंग के बहुत ही सुन्दर आसपास मछली वाला--

इस चित्र में एक स्वर अस्पताल दिखाई दे रहा है सामने सफेद रंग की कार खड़ी दिख रही है।